हरे रंग का मैट बिछा है। कुछ कुर्सियाँ दिखाई दे रही हैं। पीछे लकड़ी का बड़ा काउंटर भी बना हुआ दिखाई दे रहा है।

लोहे के बड़े-बड़े छड़ बिछे हुए हैं।

यह पिक्चर किसी जू की है इसमें एक -

यह लाल रंग की साड़ी पहनी हुई है हाथ में चूड़ियाँ व बाल में --

जमीन पर छोटे-छोटे घास उगे हैं।

पंखे लगे हुए हैं। ऐ.सी भी लगा है। सफेद रंग का लाइट लगा हुआ है।

दो आदमी खड़े हुए हैं। एक आदमी ने मुंह पर --

कॉलेज दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर राजकीय मेडिकल कॉलेज --

खम्बा लगा हुआ है कुछ लोग हैं जमीन पर लाल रंग के मैट बिछे हुए हैं।

फेविकोल व कैंची रखी हुई है।

पास ही कुछ काली रंग की कुर्सियाँ रखी हुई हैं। रैक बने हुए हैं। रैक पर ढेर सारे सामान रखे हुए हैं।